इसके बाहर पे वॉल है जिसमें रेड कलर का पेंट है और यहां पे कच्ची रोड है और कच्ची रोड की लेफ्ट साइड में बहुत सारी प्लांट है।

इस इमेज में यहां पे पेंटिंग की दुकान है जहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेंट है और यहां पे एक स्टूल है दो स्टूल है जिनका कलर ब्लू है।

इस इमेज में बहोत सारे लोग बैठे हैं इसमें कुछ मंदिर का प्रोग्राम हो रहा है।

इस इमेज में एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में पूरा डार्क लाइट करी है।

इसमें टाइल लगी हुई हैं और दो स्पीकर हैं।

और यहां पे एक बच्चा खड़ा है जिसने पर्पल कलर का वासकट और येलो कलर का शर्ट पहना है और सर पे --

पीछे पे अह जंगल मतलब एक पेड़ है।

इनके पास एक बोतल है और इनके पीछे साइड दो मसलों के डब्बे हैं।

आगे बीच में से एक रास्ता जा रहे है।

और छत में ब्लू कलर की लाइट है।

इस इमेज में ये एक शॉप है।

इस इमेज में यहां पर बुद्धा टेंपल में बुद्धा जी की फोटो खींची गई है।

और घर के आगे पे एक रोड है।

यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं।

और रिवर के ऊपर दो वायर है और उसके आगे भी एक वायर है।

इस इमेज में दो तीन लड़के इस गड्ढे में फस गए हैं और यह पथरों नहीं यहां पे चार पत्थर है।

एक लड़के का जूता है जिसका कलर ब्लैक है।

एक आंटी अ येलो और ब्लैक साड़ी में यहां पे एक मंदिर क्रॉस कर--